शीशा का गेट लगा हुआ है उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुवा है उसके पीछे हैं |

उपर हरा कलर से लिखा हुआ है।